देखिये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। कलरफुल है। यहां पे खिड़की भी लगी हुई है।

इसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बहुत सारी विंडो है। बहुत सारे दरवाज़े बने हुए हैं। यहाँ पे आस पास घ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक मच्छी बाज़ार है। यहाँ पे बोहोत सारी मच्छी रखी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ म जिम का सामान रखा हुआ है।

औ यहाँ पे वो पेर् बी हे छोटे औ यहाँ पे बी खड़ी हुई है बस भी है औ यहाँ पे लाईटें लगी हैं। यहाँ पे --

यहाँ पे ब्लेक कलर के जीने हैं यहाँ पे लाइटें लगीं हैं देखो यहाँ पे पंखे भी लगे है।

ये एक बस स्टेंड है यहाँ पे बसें खड़ीं हैं यहाँ पे दो बस खड़ीं हैं यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं।

जो जो आपने एक ही तरह ड्रेस पहनी है रेड कलर की और पीछे सजावट हुई है।

यहाँ पे भगवान जी का त्रिशूल लगा हुआ है। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। यहाँं रोज़ का यहाँं पे --